कोल लेकर खड़ा हुआ है वह पीछे एक पेड़ दिखाई दे रहा है जिसके पास एक लाइट है|

सामने एक आदमी टेबल के पास में बैठा हुआ है और पेपर पढ़ रहा है उसके पास में बहुत सारे चॉकलेट्स के पैकेट रखे हुए हैं और सामने यह एक--